एंड ब्राउन ब्राउन सा कलर है उनका।

यह फोटो में काफी सारी दुकान दे दिखाई दे रही है।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

एक रेस्टोरेंट की फोटो है।

डांस हो रहा है।

आसमान भी नीला साफ दिखाई दे रहा--

और वो ग्राहक का वेट कर रहा है यहां पे।

जिसमें एक टी प्वाइंट दिखाई दे रहा है।

पर लाल कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे जूते दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में चेयर लगी हुई है तीन--

यह एक येलो कलर की बिल्डिंग --

काफी सारी वायरे भी जा रही हैं यहां से।

काफी सारे पेड़ बीच मे दिखाई दे रहे आपको।

यह एक गुरुद्वारे के बाहर की फोटो है।

जिसमें चार महिला खड़ी हुई है।